यहाँ पे बाल वाल का कुछ काम हो रहा है। शायद या कुछ मचा अ पिलर विलर गड़ रहा है और उधर मशीन वशिन रखा हुआ है इधर पॉपु मतलब जैसे किरान है।

यहाँ दो तीन ट्रक लगे हुए हैं। दो गो बड़ा सा एक बड़ा सा पोल सा नजर आ रहा है। यह पेट्रोलियम शायद है या एलपीजी गैस हो सकता है।

यह पैर पब्लिक ब्वने हुए हे जहा पे बहोत सरे आदमी खड़े होक फ़ोन यूज़ कर रहे हे कोई एक-दुसरे को देख रहे हे कोई एक-दुसरे से बात कर रहे है।

मिठाई का स्टोर है और यहाँ पे बर्फी मिठाई वगैरह नजर आ रहा है चिवड़ा झिलया विल्या नजर आ रहा है पेपर है और शीशा है।

और इधर पेड़ नज़र आ रहे है उसके ऊपर जो है लोहे का पाइप लगा है जो ब्लैक कलर का दिख रहा है और उसके बगल में हरा भरा पेड़ पौधे दिख रहे हैं और पानी बहुत --

यहाँ एक मंदिर है जो बहोत बड़ा है। मंदिर रेड कलर का है उसके ऊपर कुछ तीरनुमा निकला हुआ है जो सोना कलर का है।

और घर वाइट कलर का है और इसके बाहर में मट्टी कलर का पट्टा से कलर किया हुआ है। खूबसूरत डिजाईन में बना हुआ घर है।